कोई बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है आसपास कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है

इस दृश्य में हम देख सकते है यह एक एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य है यहां कुछ यात्रीगण है जो कि अपने फ्लाइट के आने का वेट कर रहे है।

इस दृश्य में हम देख सकते हैं किसी स्ट्रीट मार्केट का जगह है यहां आसपास हामें बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं एक साइकिल दिखाई दे रही है शटर दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य मे हम देख सकते हैं या एक एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य हे यहां कुछ कुर्सिया दिखाई दे रही है कुछ लोग हैं जो की खड़े हैं और कुछ बैठे हुए लोग नजर आ रहें हैं बाहर खुला आसमान नजर आ रहा है एक सूरज नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हम देख सकते हैं यह एक एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य हैं। ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है सामने रणवे दिखाई दे रहा है।

प्लेन दिखाई दे रही है आसपास बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। जो कि यहां की यात्रियों के समान को ले जाते हुए दिखाई दे रही है।

आस पास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं सीलिंग दिखाई दे रहे-- सीलिंग पर लाइट दिखाई दे रहे हैं।

इस दृस्य में हम देख सकते हैं बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमें सामने एक डेकोरेशन के लिए बहुत ही सुंदर गेट सजाया गया है।